देखे के यहाँ पे जे_सी_बी से माटी खुदा रहा है मतलब जे_सी_बी जो गाँव मे इसको मशीन जे_सी_बी मतलब बुलडोजर के नाम से भी प्रसिद्ध है देखिये इसको जे_सी_बी से कितना मस्त खुदा जा रहा है यहाँ पे कुछ काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस लिए यहाँ पे--

ये देखिये यह देखिये कितना अच्छा बाइक का रिपेरिंग किया जा रहा है ओह सोरी मतलब कार वा रिपेरिंग किया जा रहा है| देख रहे हैं कितना अच्छा से रिपेरिंग किया जा रहा है।

देखिये कितना अच्छा लग रहा है ना देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है मतलब देखने में लग रहा है| | बहुत मतलब इतना पेट्रोल पंप है देख रहे है कितना मस्त लाइटनिंग इस पे पेट्रोल पंप पे दिया गया है देखिये सब ही पेट्रोल पंप के साइड रहता है देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है